और यह घर अच्छा है बहुत सुन्दर है। यहाँ पर रहने में भी बहुत अच्छी सी --

और बहुत अच्छी ही सी जगह --

यहाँ पे येल्लो कलर का है ह हरा कलर का है और बहोत ही खूबसूरत लग रही है बहोत ही घाना है।